लो है क्रीम कलर का और वाइट कलर के दो तकिए रखे हुए हैं एक सॉकेट लगा हुआ है जिसमें चार्जर लगा हुआ है।

और एक येलो कलर की साड़ी में एक लेडी खड़ी हुई है इनके बराबर में एक जेन्ट्स खड़े हुए हैं।

नीचे एक सिलेंडर रखा हुआ है एक साइकिल खड़ी हुई है एक नीले कलर का डिब्बा रखा हुआ है उसके बराबर में एक आदमी --